आदमी का पैर दिख रहा है आदमी एक जा रहा है.

एक आदमी खड़ा होके बात कर रहा हे पैकेट मे हाथ डाला हुआ हे एक आदमी--

यहां हरा कलर का कारपेट जैसा बिछा हुआ है.

ऊपर में रेड कलर का लगा हुआ है।

ये बैदनाथ धाम है.

यहाँ श्री श्री एक सो आठ रावनेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम जिसे हम बैजू धाम भी कहते हे.

यह स्कूल है स्कूल के अंदर में ग्राउंड में बस रखा हुआ है.

डी_जे लाइट डी_जे अम्-कुर्सी है आदमी लोग खड़ा है.

एक बच्चा वहां दिख रहा है।

ये पार्टी का यह स्टेज बना हुआ है।

यह शिवगंगा है यहां चारों तरफ खंभे लगे हुए हैं.

हाथ मे कुछ डोला रही है.

सब भींग रही है लड़का भी भींग रहा है दो लड़की फो--

हरा करब कलर का कार्पेट बिछा हुआ है.

यहां बहुत सारी आदमी है बच्चा है औरत है लड़की है।

लड़की मंगलसूत्र पहनी हुई है।

यहां बिल्डिंग है ये लगता ये स्कूल है।

यहां बहुत सारी पर्दा टांगा हुआ है.

गुलाबी कलर का पहनी है कोई बुलु पहनी है कोई रेड पहनी है बेलून लगाए पीछे.

यहां चेयर लगा हुआ है.

चेयर कोई बहार करके बैठा हुआ हे दो लड़का बैठा हुआ हे ऊपर मे बरस हे.

इसमें मोक्ष उगा हुआ है।

बगल में प्लास्टिक का गदा--